स्टेज भी दिखाई दे रहे हैं दो लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

बगल में ट्रक लगा हुआ है पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहे हैं।

टेबल भी लगे हुए हैं आदमी भी दिखाई दे रहे है फैन भी दिखाई दे रहे है टी_वी भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे फूल भी लगाए हुए हैं रंग बिरंगे लाइट लगे हुए हैं दो लोग चौकीदार कर रहे हैं डंडा भी लिए हुए हैं।

घर भी दिखाई दे रहा है दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं।

ऑटो भी दिखाई दे रहा हैं बहुत सारे घर भी दिखाई दे रहे है आकाश भी दिखाई दे--

यह एक बिल्डिंग बन रहा है जिसमें पटरा लगा हुआ है रट भी लगे हुए है।

दाने भी रखे हुए हैं दाने चुग रहे हैं।

यहां पे दो सड़क दिखाई दे रहे हैं। एक सड़क में कार चल रही है घर भी दिखाई दे रहे--

तार भी दिखाई दे रहे हैं आकाश भी दिखाई दे रहे हैं।